ये गार्डन है गार्डन में बना है और पिंक कलर में है ब्लू कलर में है ग्रे कलर में है और कई कलर में एक स्वीमिंग पूल जैसा भी है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गार्डन है की क्या है पर गार्डन जैसा है।

बहोत सारी है सामने एक सफ़ेद कलर की लगता है स्त्री अंदर का है ये--

पता नही क्या है कलर -कलर में है।

ये जिम है बहोत बड़ा है अपने-अपने बॉडी को फीट रखने के लिए यहाँ पर आते है।

लक्स की पोस्टरस् छपी हुई हैं।